छोटे बच्चों की साइकिल दिख रही है और--

हमें एक एल_ई_डी भी दिख रही है।

फर्स भी दिख रहा है।

यहां पर दो गाड़ीया खड़ी हुई दिख रही हैं।

और मेज कुर्सीयां भी रखी हुई है।

और सामने एक टूंटी भी है।

जिसके बोलेट पर एक बी_जे_पी का झंडा लगा हुआ है।

हमें इस फोटो में एक नाव दिख रही है।

एक अंजन भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सी नाव खड़ी हुई हैं।

और यहां पर कुछ डंडे भी रखे हुए हैं।

और इनके आसपास पेड़ भी एक खड़े हुए हैं।

और यहां पर बहुत सी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक का कमरा भी है।

और सामने दीवार पर एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक गुरुद्वारा दिख रहा है।

उसमें के पीछे पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।

और यहां पर हमें दो गेट भी दिख रहे हैं।

और यहां पर बहुत से पेड़ भी है।

दो तकिये रखे हुए हैं।

हमें इस फोटो में एक गेट दिख रहा है।

बहोत सी मेज दिख रही है।

और पीछे की तरफ सरिये रखे हुए हैं।

एक मेज भी रखी हुई है।

यह एक दुकान का व्यू है।

यह एक किसी जंगल का व्यू है।

यहां पर बहुत सी साइकल दिख रही है।

ये पंखे भी दिख रहे हैं।

और दीवारो पर बहुत से कागज भी लगे हुए हैं।

यह एक गार्डन का व्यू है जिसमें बहुत से बच्चे और विमेंस दिख रही है।

हमें इस फोटो में पेड़स भी दिख रहे हैं।

और गेट पर ताला लगा हुआ भी है।

इस फोटो में हमें सब्जी मंडी का व्यू दिख रहा है।